यहां पर मुझे दो इलेक्ट्रिसिटी खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक हलवाई की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक ट्रेन दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे एक वर्किंग टेबल दिखाई दे रहा है।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

यहां पर मुझे एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे बहुत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा हैं।